और आगे में उजला कलर का पानी टंकी है।

यह पे दो बस लगी हुई है।

और टेबल पे ब्रेड रखा हुआ है।